तीन औरत दिखाई दे रही हैं।

वहां पर काले कलर का गेट लगा हुआ है और वो खुला है।

और यहां पर बस लगे हुए हैं और इसके अंदर--

और ए एक आदमी के ऊपर पुतला बना हुआ है।

ये लोग खिलौना खरीद रहे हैं और एक लड़का खड़ा हुआ है। कंप्यूटर पे काम कर रहा है।